नीचे डोमिनोस पिज़्ज़ा है। नीचे बड़ा सा यूनिफार्म लिखा हुआ है।

निचे गाड़ी दिखा रही है पीछे पेड़ दिख रहे है आगे लाल कलर के गमले दिख रहे है उसके अंदर पौधे है।

नीचे फर्स दिख रहा है जोकि मट्टियाला है ब्राउन कलर का छोटे -छोटे पत्ते निकले हुये है फर्स के अंदर

ग्रीन कलर की साड़ी पहनके पिले कलर का ब्लाउज एक अंकल खड़े है। जीन्स ब्लू वाइट --

और इसमें एक ए.सी दिख रहा है जो की सफ़ेद कलर का है।

वन एट सेवन जीरो ब्लैक कलर में लिखा है और यहाँ पर बेंच लाल कलर की है और पीछे की दीवाल इसकी चोकलेटी कलर की है।

और एक लड़की दिख रही है जाती हुई उसका ब्लैक पैंट है और ब्लू टॉप है और--

टावर में रुकने का एक चौखूंट सा चौवा बना रखी है।

इसके साइड में एक लोगो दिख रहा है एच.डी.एफ.सी बैंक का यहाँ पे एक अंकल खड़े है व्हाइट और ग्रे कलर --

ड्राई फ्रूट्स सी है। ड्राई फ्रूट्स की दूकान है। सेब दिख रहे है। यहाँ पे एक भैया दिख रहे है।

और केले दिख रहे है भैया के ब्लू जीन्स है और रेड और ब्लैक --

इस बैंक की दीवाल सफ़ेद है। इसका शटर लाल है।

सामने डस्टबिन दिख रहा है नीले कलर का और एक फैन दिख रहा है स्टैंड वाला--